एक इसकी बराबर में शायद घर है और ये नीले शीशों ने सजा है। इसमें इलाज भी वगैरा होता है। ये बोहोत देखने में काफ़ी अच्छा है।